ल और यहां पे उस लड़की का पर्स चेक कर रहा है।

ये एक पहाड़ है जो दिखने में बहोत अच्छा है।

यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।